दो गेट है और अगल बगल मे पेड़ पौधे है।

और ऊपर में आसमान हैं और अगल-बगल में छोटा-छोटा घास हैं।